सम्राट मोटर के पोर्ट की नज़र आ रही है जहा पे काफी तरह-तरह के ऐटो नज़र आ रहे है।

यह चित्र में ग्राहक सेवा केंद्र नज़र आ रहा है।

जिसे इंग्लिश में स्टा-स्टेट बैंक के केयर सर्विस नज़र आ रही है और यहा पे इस घर के नीचे काफी सीढ़ियां नजर आ रही है।